और ये उसके बगल में है जो की दवाइयाँ और बहुत सारे --

बहुत बड़ा मेला के जैसा लगल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं रोड पे।

और इसके आसपास बहुत सारे पेड़-पोधे हैं।

मोर जो कि अपना अथी फैलाये है बहुत मस्त मोर लग रहा है।

जो की बहुत सारे इसमें तेल साबुन व मसाला गाल में लगाता है।

बहुत जानवर है। ये भी जंगल में घूम रहे हैं।